मूर्ति बैठी हुई है।

सामने टीवी रखी हुई है और एक आदमी बैठ कर बाल कटवा रहा है वो नीले कलर का कपड़ा ओढा हुआ है।

और रेड कलर का ये नीचे पट्टी बिछा हुआ है।

हमें एक दुकान दिखाई दे रहा है। दुकान के अंदर ऊपर चिप्स नमकीन --

यह इमेज सिटी सेंटर सैलून का इमेज दिख रहा है।